यहा पर आप देख रहे है यह यहा पर द्वेर एयरक्राफ्ट खड़े हुए है और है एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसकी आस-पास बड़े-बड़े वृक्ष लगे हुए है।

बहूत ही सुंदर पेंटिग जो की मुजीयम में रखी हुई है।